उस पर एक आदमी बैठा है दुकान का नाम लुनिया एंड कंपनी है।

यहां काम चल रहा है। यहां लकड़ियां बिछाई जा रही है।

एक और काउंटर भी लगा हुआ है ऊपर पंखा और ए_सी भी लगी हुई है।

कंप्यूटर लैपटॉप एसेसिरिज यहां उपलब्ध है।

और बहुत सारे प्लास्टिक के सामान भी है जो रैंक पर सजे हुए हैं।